एक आदमी पैदल जा रहा है।

फूल बैठने के लिए सोफा एकोरियम पंखे लाइट घड़ी --

मकान बोहोत बढ़िया मकान है फार्महाउस है --

रेलवे स्टेशन रेडलाइन पत्थर लोहे प्लॅटफॉम ओवरब्रिछ रेलवे बिजली का तार --

यहाँ पर शादी चल रहा है पुरोहित मन्त्र कर रहा है फोटोग्राफर फोटो तुल रहा है।

छोटा छोटा घास फुस है। बड़ा सा पेड़ भी है। पत्थर भी है पहाड़ भी है एक लड़का खड़ा है नंगा पाव।